टेब्ले ज बनी हुई दिखाई दे रही है।

पौधे लगे हुए दिख रहे हैं। अलग किनारे कुछ चट्टानें भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

बस की खिड़कियों में कुछ पर्दे भी लगे दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल टैंक पर कुछ लोग भी हुए दिख रहे हैं।